ये मुंबई का नानावती हॉस्पिटल का फोटो हैं ।

और सिंबल भी बना हुआ हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में प्लस का --

ऊपर स्टेज पे अच्छा सजावट हैं लाइटिंग अच्छा किया गया हैं ।

यहाँ पे सब टेबल और कुर्सी सजाए हुए हैं ऊपर से कपड़े से ढके हुए हैं ।

मैदान में काफी हद तक भरा भरा घास हैं कुछ दूर तक एकदम मिट्टी दिख रही हैं ।

बैग लिया हुआ हैं और ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ हैं ।

ब्लैक कलर का टीशर्ट पहना हुआ हैं और अपना शर्ट --

और पीछे उसके गुब्बारे लगे हुए हैं ब्लैक कलर का है और रेड कलर का भी हैं ।

और उसपे कैंडल जल रहे हैं कैंडल का रोशनी --